यह एक बहुत सुंदर दुकान है।

कमरे में पीले कलर का पेंट हो रखा है और कमरे की छत में लाइट लगी हुई है।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

जिस पर सफेद कलर का पेंट हो रखा है।

बाहर की साइड ब्लैक कलर की कुर्सियां रखी हुई हैं।

इसमें सफेद कलर का पेंट हो रखा है।

यह एक बहुत सुंदर पेठ भर रही है।

अउर कुछ व्यक्ति आते जाते दिखाई दे रहे है।

एक सफेद कलर का पंखा भी दिखाई दे रहा है।

कमरे के अंदर बहुत सी कुर्सियां रखे हुई हैं।

इसकी छत में लाइट भी लगी हुई है और पंखे भी लगे हुए हैं।